मेरे सामने कूलर का बोर्ड लिखा हुआ है और इसका कलर --

ये बहोत से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

पहाड़ का कलर ब्लैक कलर का है और येलो कलर का भी है।

बंधन बैंक दिखाई दे रहा है।

तेल शैंपू वगैरा भी रखें हुए--

मेरे सामने एक आदमी गली का नुकसा--

एक गली सामने भी दिखाई दे रही है।

प्रेशन से पहले निर्देशों का पालन करें।

सैलून के बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

है ऊपर परदों की डेकोरेशन --

और इसके सामने एक बलून के द्वारा हाथी भी बनाया हुआ--

कंसक्शन का काम कर रहा है।

मेरे सामने एक खेल का ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

रहा है उसका लोगो --

वाश बेसिन सिंक वगैरह रखे हुए नजर आ रहे--